रोड पर चलने का अधिकार पाते है।

नॉनवेज होते हैं वह लोग यहां आते हैं।

यह एक गुरुद्वारा लग रहा है जो कि नाइनटीन एटी नाइन में बना हुआ है। यहां लोग आते हैं और अपने--

यहां एक सुंदर सा घर बना हुआ हैं मौसम भी बड़ा सुहाना लग रहा है।

खाना परोस रहे हैं सर्व कर रहे और लोग बड़े ही मजे से खा रहे हैं।

और यहां सारे पेट्स की एक्सेसरीज मिलती है और--

जो कि छब्बीस जनवरी या पंद्रह अगस्त के टाइम पर इसे सजाया गया है।

पैकिंग की जाती है और बॉक्स पैक किए जाते हैं।

मौसम भी बड़ा अच्छा है पास में एक गार्डन भी है और यहां पर मुझे बस--

कॉम्बिनेशन के साथ जो फ्रेम लगी है वह भी अच्छी लग रही--

यह बहोत ही सुंदर इचर कंपनी का ट्रैक्टर है या बहोत ही उपयोगी मशीन है।

लगता हैं यह टायरों की दुकान हैं।

यहां पर बहोत ही सुंदर सी लाइटिंग की गई है।

कैटरर्स खाना सर्व कर रहे हैं।

यह एक कोल्ड ड्रिंक का दुकान है जहां लोग थोड़ा आराम करते हैं यहां नमकीन भी मिलता है यहां।

और लोग गर्मी से बचने के लिए यहां आ जाते है।

यह एक फैक्ट्री लग रही है यहां पे रेट बनाई जाती है।

बड़ा सा एंटरि गेट है किसी सोसाइटी का यहां एक सुंदर सा घर भी है।

यह बिल्डिंग बहुत बड़े लग रही है स्कूल की--

जहां पर कॉफी आइसक्रीम केक --